जहां पे सामने लिखा है ड्राई क्लीनर्स --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

दूल्हे के सामने एक लड़का ऑरेंज कुर्ता पहने खड़ा हुआ है।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

और पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं तालाब का पानी बहोत ही साफ दिख रहा है।

फूलों से और लाल कलर की और ऑरेंज कलर की फूलों की माला चढ़ी हुई है।

ओकेरिया हम्म और एक अलग तरीके की मशीन रखी हुई--

अंदर की ओर खड़ा है और बाहर एक लड़का ब्लू कलर का जैकेट और ब्लैक की शर्ट पैंट पहने हुए--